मैं देख सकता हूं यहां पर लाइट है।

मैं देख मैं देख सकता हूं एक दीदी है मैं देख सकता हूं एक ब्लैक ब्लैक है।

मैं देख सकता हूं यहां पर एक फ्रिज हैं में--

मैं देख सकता हूं यहां पर एक स्विमिंग पूल है।

मैं देख सकता हूं यहां पर एक फैन है।

मैं देख सकता हूं यहां पर एक होटल है।

मैं देख सकता हूं यहां पर बड़ी सी लाइट है मैं देख सकता हूं यहां पर एक होटल --

मैं देख सकता हूं यहां पर एक बड़ी सी बिल्डिंग है मैं देख सकता हूं यहां पर बहोत सारे जीने हैं।

मैं देख सकता हूं यहां पर एक बड़ी सी बिल्डिंग है।

मैं देख सकता हूं यहां पर एक रोड है।